और सफेद कलर की बैंच हैं। बैंच के ऊपर एक कटोरी पड़ी है और पीछे--

पीछे और भी बड़ी बड़ी दुकाने है दिखाई दे रही है एक बहोत ही बड़ा पेड़ लगा हुआ है ट्रक के पीछे--

यहां पर सामने दो ट्रक दिखाई दे रहे है जो रेड कलर के है।

यहां सामने एक दुकान है ऊपर लिखा हुआ है साईं व्हील ऐलांसमेंट ।

और इधर साइड पीछे कुछ ग्राउंड दिख रहा है वो बहोत ही गहरा है छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे हुए है।